मुझे दो ठेले दिख रहे हैं ठेले के अंदर कुछ घास फूस रखी हुई है।

और मुझे स्विमिंग पूल के बाहर बहोत सारे आदमी नजर आ रहे हैं।